और उसके बगल मे एक टेबल है इसमें भी बहुत ज्यादा ऊपर में बहुत ज्यादा अलग अलग बॉक्स लोग रखा हुआ है।

भी है और एक कंप्यूटर दिखाई मिल रहा है।

टिनां से बनाया हुआ गेट दिखाई मिल रहा है।

इसमें व्हाइट कलर का ग्लास से दरवाजा बनाया हुआ है।

ऊपर मे तरफ फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रहा है।

गाड़ी रस्ता भी है दिखाई दे रहा है।

अलमारी में बहुत ज्यादा सामान दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक लाइट बफ दिखाई दे रहा है।

चेयर और टेबल लोग दिखाई दे रहा है।

दिखा रहा है इसमें दिखाई दे रहा है इसमें--

ब्लू कलर से पेंटिंग किया हुआ है इसमें टी_वी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर जो पूरा व्हाइट और रेड कलर से पेंटिंग किया हुआ है।

और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी पार्किंग किया हुआ है।

और बहुत ज्यादा विंडो और दरवाजा दिखाई मिल रहा है।